यात्री बैठे हुए है इसमे साइड मे तीन सेट बना हुआ है और कुछ पेड पौधे दिखाई दे रहे है और तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है इसमें पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है उसपर चिरवंजी लिखा हुआ है।

मे लंबी कतार में खड़े हुए दिखाई दे रहे है मैदान एक पीली मशीन रखी हुई है इस मैदान में मेट डला हुआ है इसके बाउंड्री खिची हुई है हरी नेट लगी हुई है पेड़ पौधे वृक्ष दिखाई दे रहे है बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा --

इसमें लाल पट्टा डाला हुआ है वो टीशर्ट दिखाई दे रहा है नीचे उस साइड एक गेट दिखाई दे रहा है कुछ आदमी चलते नजर आ रहे हैं।

बहुत लम्बी बिल्डिंग बनी हुई है जो ऑरेंज कलर की है ओ इसमे दोनों तरफ से गेट बनी हुई है उस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है उस सामने मैदान पड़ा हुआ है।